ये सोके मिशन दिख रहा है दिवार में प्लस का चिन्ह है आगे काफी अच्छे हरे - भरे है।

और इसमें दो औरते चल बुल रही है और पीछे पहाड़ दिख रही है और मौसम काफी सुहाने हैं और खेत में पानी है।

और आगे कुछ कार लगे हुए हैं औल साइड मे एक ट्रैक्टर लगा हुआ है।

यह एक जिम स्टोर है जो कि जम्मू के झाझा बस स्टैंड के थोड़ा आगे यह जिम उपलब्ध है।

दीवाल से सटा एक साइकिल है और रास्ते पर एक बाइक है।

यह निर्वाचन विभाग है जो कि जम्मू मे स्थित है इसके साइड मे गांधीजी का फोटो लगा हुआ है।

हैं। एक व्यक्ति जा रहे हैं और दो व्यक्ति कुछ बात कर रहे --